काफ़ी पुराना महल जैसा देखने में --

कोई पुल पर का एरिया हैं जहाँ पे ये ऑटो --

जब कि यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां --

काफ़ी कुर्सियां और टेबल लगाई गई हैं।